ये जिम में सब इंसान को जाना चाहिए सेहत पे ध्यान --

ये घूमने का सामान बना हुआ हैपूल जैसा हैटेढ़ा-मेढ़ा हैतिरछा है और व काफी बड़ा हैकाफी मजबूत है और बहोत सारे लोग इस पर चढ़ रहे हैं कोई उतर रहे हैंबगल में गाड़ी लगा हुआ है।